जो की एक बड़ी गाड़ी है जो की सड़क के किनारे खड़ी है।

बड़ी लकड़ी से स्टूल बनाया हुआ है सोफा बना है जिसमें बहुत ही सुन्दर नकासी की हुई है जिसमें गोल आकार नकासी है और --

चारो तरफ हरियाली है बड़े-बड़े पेड़ हैं आसमान सफ़ेद रंग का है और यह थोड़े सा काला --